ऊंचा और छोटे-छोटे फोटो भी बनाया हुआ उसमें सांप बनाया हुआ है और बहुत कुछ बनाया हुआ दोनों साइड बनाया हुआ है छोटे - छोटे पेड़ भी है ।

और वहां पेड़ लगा हुआ है हरा भरा चट्टान जो है बहुत बड़ा बड़ा हैं।

और एक बच्चा जो है डांस कर रहा है यहां जूते मोजे पहन के कैप पहन के और हाथों में भी जूते पकड़े हुए है।

पीछे जो है बहुत सारा--